और मेज बेचें पड़ी हुई है लाइट वगैरा सेट की डिजाइन में फोल्डिंग वगैरा है।

आसमान दिख रहा है और हरी हरी घासें लगी हुई हैं।

यह एक मस्जिद है और इसमें रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हुए हैं रंग बिरंगी झंडियों से सजा हुआ है।

दो लड़के खड़े हुए ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहने एक ये चितकबरी टी-शर्ट पहने हुए खड़ा है और दो लड़के बैठे हुए हैं।

और ये झ झंडियों से सजा हुआ है।

इस चित्र में एक सब्जी की दुकान है।

प्याज रखी है भिंडी है तोरई है।

ये एक रेत फैक्ट्री है।

कंप्यूटर मशीन रखी हुई है।

ये एक पेट्रोल टैंक है इसमें गाड़ी खड़ी हुई है वहां पे वहां के कर्मचारी खड़े हुए है।

ये एक बैकरी है जिसमें बिस्किट वगैरा लगे मिलते--

शीशे की रैक में केक वगैरा चॉकलेट वगैरा लगी हुई है।

पेड़ लगे हुए हैं हरे भरे।

ये एक मार्केट का चित्र है जिसमें विशाल बुक स्टोर है और ऊपर न्यू रतन है।

बैनर लगा हुआ है और ये मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं।

एक टावर टाइप का दिख रहा है।

और पर्पल कलर के पर्दे पड़े हुए हैं।

पास में उसके दरगाह है वो भी लाइट सजी है।

ये एक बैकरी रूम है।

एक लड़का चेयर पे बैठा हुआ है फोन चला रहा है।

लोग खड़े हुए हैं और आसमान दिख रहा है और--

नीचे फर्श वगैरा दिख रहा है।

आई_टी कॉलेज लिखा हुआ है।

ये एक मंदिर मंदिर है।

गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है।

ये चेक कलर की टी-शर्ट पहनी है एक ब्लू कलर --

एक खड़ा हुआ है एक बा एक्सरसाइज बॉल से खेल रहा है।

पीछे कुछ कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

और पूरे छत पर लाइटें लगी हुई हैं।

इसके बैनर पे अनमोल लिखा हुआ है।

बहुत सारे लोग खड़े झांक रहे हैं और नीचे भी झांक रहे हैं।